यहां पर कुछ लोग हैं जो कारपेंटर नजर आ रहे--

और यह देखने से पता चलता है कि बच्चे किस प्रकार से कितना पढ़ाई--

इस जिम में एक लड़का है जो रनिंग मशीन पर खड़े खड़े रनिंग कर रहा है।

यहां पर मुझे एक बहोत ही बड़ा जिम ट्रेनिंग सेंटर नजर आ रहा--

जहां दो टीचर लोग इनको देख रहे हैं कि किसी प्रकार से बच्चे मेहनत कर रहे हैं।

जहां पर ऐ_सी लगा रखा है बैठने के लिए टेबल कुर्सी--

यह एक बोर्ड बच्चों को पढ़ाते समय लिख-लिख कर पढ़ाने में उपयोग में आता हैं।

जिस प्रकार से इस रोड को उन्होंने बनाया है मुझे लगता है की आसपास एक छोटासा गांव है।

और कुछ कैमरे जैसे लेकर खड़े हैं मुझे लगता है कि यहां--

जिसका नाम है श्री श्याम स्पेयर हाउस एंड रेफ्रिजरेशन --

जिस प्रकार से इन्होंने इस दुकान को लिखा है यहां पर अलग अलग प्रकार की कंपनियां जैसे की सैमसंग वोल्टोज और इस--

टी_वी देख रहे हैं यह टी_वी पर बहुत ही अच्छा--

एक ट्रेडिंग कंपनी है जहां बहोत सारे व्हाइट कलर के गोल गोल स्टिकर दिखाई दे रहे हैं।